बहुत महिला दिखाई दे रही है और कुछ आदमी दिखाई दे रहे है एक आदमी दिखाई दे रहा जिसने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है।

बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है एक एसी दिखाई दे रहा है एक पुलिस वाला भी दिखाई दे रहा है और एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे हमे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो जिम मे बैठा हुआ है एक चेअर दिखाई दे रही है जो लाल रंग की है।